जावा में व्हाइल लूप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप व्हाइल लूप के बारे में सीखेंगे
इसे कैसे प्रयोग करते हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में रिलेशनल आपरेटर्स का ज्ञान होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्न वेबसाईट पर जाएँ
httpspoken tutorialorg यहाँ व्हाइल लूप के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है
इसके दो भाग हैं
एक लूप रनिंग कंडीशन और दूसरा लूप वैरिएबल है
अब एक उदाहरण देखते हैं
इक्लिप्स पर जाएँ
यहाँ हमारे पास शेष कोड के लिए आवश्यक इक्लिप्स इडे और स्केलेटन है
मैंने व्हाइलडेमो नामक एक क्लास बनाया है और मेन मेथड को इसमें शामिल कर दिया है
हम एक व्हाइल लूप का प्रयोग करके 1 से 10 तक संख्याएं प्रिंट करेंगे
टाइप करें इंट एन 1 वैरिएबल एन हमारा लूप वैरिएबल होगा टाइप करें व्हाइल परेन्थेसिस में एन लेस थान ओर इक्वल टो 10 ब्रैकेट खोलें और बंद करें यह कंडीशन लूपिंग रनिंग कंडीशन कहलाती है
इसका अर्थ है कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी
हमारे केस में यह तब तक चलता रहेगा जब तक एन की वैल्यू 10 से कम या बराबर है
और यह केवल तब रुकेगा जब एन की वैल्यू 10 से अधिक हो जाएगी
लूप के अन्दर हम एन की वैल्यू प्रिंट करेंगे systemoutप्रिंटलन और फिर जोड़ें एन एन 1 इस प्रकार पहले 1 प्रिंट होता है और फिर एन की वैल्यू 2 हो जाती है
फिर लूप कंडीशन की जांच की जाती है
चूँकि यह ट्रू है
2 प्रिंट किया जाता है और एन 3 हो जाता है
और इसी प्रकार लूप तब तक बढ़ता रहता है जब तक 10 प्रिंट हो जाता है उसके बाद एन 11 हो जाता है और कंडीशन ट्रू नहीं होती और लूप रुक जाता है
अतः कार्यान्वित कोड को देखते हैं
सेव और रन करें
चूँकि हम देख सकते हैं 1 से 10 तक संख्याएं प्रिंट हो जाती हैं
अब हम 50 से 40 तक संख्याएं प्रिंट करेंगे अतः हम 50 से शुरू करते हैं
एन 1 को एन 50 से बदलें और हम 40 तक जायेंगे
दूसरे शब्दों में जब तक एन 40 से ग्रेटर या इक्वल है
अतः कंडीशन को बदलकर एन 40 से ग्रेटर या इक्वल है करें
और चूँकि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लूप कर रहे हैं इसलिए हमने लूप वैरिएबल को घटाया है
अतः nn 1 को बदलकर nn 1 करें सेव और रन करें
चूँकि हम देख सकते हैं 50 से 40 तक संख्याएं प्रिंट हो गई हैं अब हम 7 के पहले 10 मल्टीपल प्रिंट करेंगे
ऐसा करने के लिए हम 7 से शुरू करते हैं अतः एन 50 को बदलकर एन 7 करें और फिर 70 पर समाप्त करें कंडीशन को बदलकर एन लैस दैन इक्वल टू 70 करें इस प्रकार हम यह सुनिश्चित करते हैं कि लूप 70 पर रुक जाता है
मल्टीपल प्राप्त करने के लिए लूप वेरिएबल में 7 से वृद्धि करेंगे
अतः nn 1 को बदलकर nn 7 करें इस प्रकार पहले 7 प्रिंट किया जाता है और फिर एन 14 हो जाता है और इसी प्रकार 70 तक चलता रहता है
सेव और रन करें
चूँकि हम देख सकते हैं 7 के पहले 10 मल्टीपल प्रिंट हो जाते हैं
हम एक संख्या के अंकों का योग ज्ञात करने के लिए भी व्हाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं
देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं
पहले मेन मेथड को क्लियर करें
इंट एन इक्वल टू 13876
यह नम्बर है फिर इंट डीएसयूम इक्वल टू 0 अंकों के लिए वैरिएबल डीएसयूम सिंबल के साथ में अंकों का योग शामिल होगा टाइप करें व्हाइल एन ग्रेटर दैन 0 परेन्थेसिस खोलें और बंद करें इस कंडीशन को प्रयोग करने का कारण एक व्हाइल लूप में स्पष्ट होगा
अंकों का योग प्राप्त करने के लिए हमें पहले अंक प्राप्त करना चाहिए
ऐसा करने के लिए हम मोड्यूलो ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं
फिर डीएसयूम डीएसयूम एन 10 अतः हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं और इसे डीएसयूम में जोड़ देते हैं
इसके बाद हम 10 से विभाजित करके अंकों को हटाते हैं
एन एन 10 अतः जब लूप प्रथम बार संचालित होता है डीएसयूम 6 होगा और एन 1387 होगा
और जब लूप दूसरी बार रन होता है तो डीएसयूम 7 और 6 का योग होगा जो कि 13 है और एन 138 हो जाएगा
इसी प्रकार जैसे जैसे लूप बढ़ता जाता है एन से अंक हटते जाते हैं और अंततः एन ज़ीरो हो जाता है
इसके बाद कंडीशन एन ग्रेटर दैन 0 फॉल्स हो जायेगी और लूप रुक जाएगा अतः अब एक प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ते हैं systemoutप्रिंटलन अब क्रियान्वित कोड देखते हैंसेव और रन करें जैसा कि हम देख सकते हैं अंकों का योग जो 25 है प्रिंट हो गया है
इस प्रकार एक व्हाइल लूप जो प्रोग्रामिंग में एक सबसे मूल कंस्ट्रक्ट्स है प्रयोग किया जा सकता है
यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा व्हाइल लूप के बारे में इसे कैसे प्रयोग करते हैं इस ट्यूटोरियल के लिए एक नियत कार्य के रूप में निम्न समस्या को हल करें
एक संख्या दी गई है एक व्हाइल लूप का प्रयोग करते हुए इसके व्युत्क्रम रिवर्स की गणना करें
उदाहरण 19435 gt 53491 स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें जो स्पोकन प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी को लिखें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
मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ